यहां पर एक व्यक्ति के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर एक व्यक्ति खड़े होकर खड़े हुए दिखाई दे रहा है।

ये इमेज एक रोड की है जहाँ पर दो लाइट के खंभे दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पर कुछ बाइके खड़ी दिखाई दे रही है कुछ बाइके चलती हुई दिखाई दे रही है| यहाँ पर कुछ अ-अ बसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ--

यहां पर कुछ चेयर रखी हुई दिखाई दे रही हैं । यहां पर फ्लैग भी दिखाई दे रहे हैं।